यहां पर बारिश होती हुई दिख रही है और दो लोग छाता लेकर खड़े हुए है।

कैफे दिख रहा है जहां पर सफेद कलर की मेज और काले रंग के--

कुर्सियां लगी हुई है और यहां पर लाइटें भी लगी हुई दिख रही हैं और--

यहां हम देख सकते हैं की हमें--

देख सकते हैं की माता का जागरण चल रहा है जहां पर--

फ्लोर पर नीले रंग का मैट बिछा हुआ है।

दिख रही है और दोनों गधे आराम से--

यहां पर हमें एक जिम दिख रही है और यहां--

यहां पर नीचे जाने के लिए--

यहां हम देख सकते हैं की यह हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट व्हीकल रेट है।

और आसपास गमलों में पौधे लगे हुए हम यहां देख सकते हैं।

और पानी की कुछ बोतले यहां रखी हुई दिख रही हैं।

यहां पर रंग बिरंगी रसिया पड़ी हुई --

पहाड़ भी नजर आ रहे हैं और बिजली की तारें हम यहां--

यह हम देख सकते हैं की योगा चल रही है।